ये एक सुंदर सा नजारा है।

ये किसी स्कूल जैसे दिखने--

ये एक विश्वविद्यालय लग रहा है।

यह एक बहुत ऊंची और सुंदर सी इमारत--

यहां में लाल रंग की सीटे हैं और--

की हैं। यहाँ पर परचून का सामान मिलता हैं।

यह तस्वीर काफी प्यारी है।

जांच कर रहे हैं वो विज्ञान से जुड़े हुए काम यहां पर--

अमूल की दुकान है और भी बहुत सारी दुकानें इसके आसपास हैं।

यहां पर फलों की दुकान दिखाई गई है।

फलो के काफी उंचे उंचे ढेर--

और दीवारों का रंग सफेद है।

यह तस्वीर एक समारोह की हैं।

एक आदमी जाता हुआ दिख रहा है।

गाड़ी सफेद रंग की चलती हुई दिख रही है।

भगवान जी की बहोत सारी अलग अलग मूर्तियां रखी हुई हैं।

यह एक बहोत ही सुंदर सी तस्वीर है।

सुंदर सी वाटिका की तस्वीर है इसमें बहोत सारी लाइटस् --